जो की बहुत अच्छा लग रहा है और खूबसूरत भी है। सबकुछ ठीक-ठाक है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है देखने में।

ये गुफा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है। गुफा खूबसूरत भी है। सबकुछ ठीक-ठाक है यहाँ का।

एक बस है जो की बस स्टेशन बस में सवारी बैठे हैं लोग जगह और अच्छा लग रहा है देखने में।

ई पूरा शादी का है जो दवा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और पूरा सजाया गया है।

अम्म बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। सुन्दर भी है। सब कुछ ठीक ठाक है।